पर एक बैंक दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर एक अंकल बैंक में से बाहर निकल रहे है और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर एक शॉप बनी हैं और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हैं।

और कुछ पंखे वगेरा भी उधर दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग दिख रही है। यहाॅं पर दो टंकीये रखी गई हैं और यहाॅं पर बोहोत हरियाली सी दिख रही है और यहाॅं पर एक पुल भी दिख रहा है छोटा सा।

इनके जो अंदर बंधे हुए हैं। यहाँ पर जो आजू बाजु जाली बंधी हुई है और जाली के बाहर पेड़ बगेरा दिख रहे हैं।

सामने एक ग्रीन कलर की दीवाल दिख रही है वहाँ पर कांँच व काँच लगा हुआ है और उसके पास में ही एक गेट दिख रहा है और पास में डंबल रखे हुए हैं ब्लू कलर और ग्रीन कलर --

और यहाँ पर बीच पहाड़ पेड़ वैगरा दिख रहा है और यहाँ पे घास वैगेरा दिख रही है।